इस इमेज मे रेल की पटरी दिखाई दे रही है बहुत से मकान दिखाई दे रहे है और कुछ सूखे हुए पेड़ भी नजर आ रहे रहे हैं।

एक रेल दिखाई दे रही है।

इस इमेज में दो मकान दिखाई दे रहे है एक मकान के आगे एक पलंग रखा हुआ दिखाई दे रहा है और बगल मे एक लड़का खड़ा हुआ दिखाई दे रहा --

इस इमेज में एक जंगल दिखाई दे रहा है जिसमें शिवजी की प्रतीमा नज़र आ रही है और बहोत से पेड़ -पौधे भी दिखाई दे रही हैं।

ता वहाँ जा रहा है कुछ पेड़ - पौधे भी दिखाई दे रहे है और सुखी हुई घास भी नजर आ रही है।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

इस इमेज मे एक लोक सेवा केंद्र जनपत पंचायत बलरामपुर नजर आ रहा है जिसके सामने तीन गाड़िया खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

इस इमेज मे एक हरी हर पेट्रोल पम्प दिखाई दे रहा है जिसके आगे एक लोडिंग दिखाई दे रहा है और दो गाय नजर आ रही है।

इस इमेज मे एक बड़े से पेड़ पर सांप की प्रतिमा बनी हुई दिखाई दे रही है और बहुत से लोग दिखाई दे रहे है ।

इस इमेज मे भगवान की पुरानी प्रतिमा नजर आ रही है और गले मे बहुत सी मालाए और सर पर मुकुट दिखाई दे रहा है।